यह एक चित्र है जिसमें हमें ब्लू एवं व्हाइट कलर की कुछ चेयर्स नजर आ रही है।

जिस पर मेडिकल नीट भी लिखा हुआ है और उसके सामने कांच की कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

जिसमें सफेद कलर की पन्नी भी चढ़ रखी है और इसके पीछे एक नीले कलर की रिक्शा भी दिखाई दे रही है।

एक बाइक का कलर काला एवं लाल है।

यह एक चित्र है यहां सामने की ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है जिसमें हमें दो आदमी नजर आ रही है।

एवं इन्होंने एक आदमी ने ब्लैक और ब्लू कलर की जींस पहने हुए हैं।

यहां पर कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आ रही हैं।

इसमें चार प्रकाल के सर्कल भी है जिनका रंग नीला पीला हरा लाल है एवं इसके बराबर में एक हमे बत्तख भी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है एवं पीला है।

इसमें तीन औरतें एक आदमी और दो बच्चे हैं।

और यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हैं।

और इसके बराबर में दो मीटर भी लगे दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है यहां पर नदी दिखाई दे रही है जिसमें एक नाव भी नजर आ रही है।

इसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

जिसका कलर सफेद है एवं इसके पीछे कुछ लाइटें भी नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है जिसमें चार व्यक्ति हैं।

यहां का पानी बहुत जोर से बह रहा है।

यहां पर एक सफेद और लाल रंग का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ सफेद कलर के डब्बे नजर आ रही है।

यहां के इनके पीछे कुछ खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।